दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है खिड़की भी दिखाई दे रही है जाली भी दिखाई दे रही है बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत सारा समान भी दिखाई दे रहे हैं आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है बाल्टी भी दिखाई दे रही है अलमारी भी दिखाई दे रहा है गेट भी दिखाई दे रहा है खंबे भी दिखाई दे रहे हैं देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

यहां पर अ लड़का भी खड़ा हो दिखाई दे रहा है बहुत सारे भी दिखाई दे रहा है पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं और गद्दे भी दिखाई दे रहे है स्टेज भी दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है।